पत्थर नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में बादल नजर आ--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

मुझे इस फोटो में मिकी माउस नजर आ रहा है।

हैप्पी न्यू ईयर नजर आ रहा है।

यह है मुझे इस फोटो में न्यूरोलाइज मशीन नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो में लोग नजर आ रहें हैं।

हैं मुझे इस फोटो में तीन लोग नजर--

ही है मुझे इस फोटो में तसला नजर आ रहा है मुझे फोटो में बाल्टी नजर आ र--

मुझे इस फोटो में एकता पैलेस व्यवहारी--

आ रहा है मुझे इस फोटो में शादी का डेकोरेशन नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में बगीचा नज़र आ रहा है मुझे इस फोटो मे सड़क नज़र--

मुझे इस फोटो में कुर्सी नजर--

मुझे इस फोटो में जहाज नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में पानी नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में धूप नजर आ रही है।

जे इस फोटो में मूर्ती नजर आ रही है।

बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो में पत्थर नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो में मस्जिद नजर आ रही है मुझे इस फोटो में हरियाली नजर आ रही।

है मुझे इस फोटो छतरी नजर आ रही है मुझे इस फोटो --